और पीछे पहाड़िया भी हो मौसम भी अच्छा दिख रहा है और पीछे कोई मकान वगैरा भी है।

पीछे ऊंची बिल्डिंग्स है।

और सबकी पेयर बने हुए--

और नीचे टाइलें लगवा रखी है डिजाइन काफी अच्छा है।

और पास में और भी सामान रखा हुआ--